इमेज में यहाँ एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे झुण्ड के झुण्ड अलग-अलग लड़ --

यहाँ साइडो में बहुत एक पेड़ है। --

ये उ लम्बी चौड़ी दिखाई दे रही उथली दिखाई दे रही बादल पहाड़ सब दिखाई दे रही हैं।

हरी भरी धूप आई हरी त हमें लगी हुई दिखाई दे रही है ये एक सिस्टम बना हुआ इस चौतरे --

एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई दिखाई दे रही उसके कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्पण लगा हुआ दिखाई दे --